सामने कुछ घास लगी हुई है हरे कलर की --

नीचे हरे कलर की घास लगी हुई है।

लड़के ने नीले कलर की शर्ट पहनी हुवी है जोकि डेनिम की है।

ब्रिज पर बहोत सारे लाइट लगी हुई हैं।

जिसमे सफ़ेद कलर की कार भी खड़ी हुई है।

नदी के साइड में बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं। बड़े-बड़े पत्थर हैं।

जो पीले और वाइट कलर का है और ब्लैक कलर का निक्कर पहना है।

कॉलेज के बाहर बोहोत सारे पेड़ लगे हैं।

नीचे लाल कलर का कारपेट है बगल में स्टेज बना हुआ है।

लड़के के बाल खड़े हुए हैं।

एक कम्प्यूटर लैब है।